ये दृश्य एक पेट्रोलपम्प का है पेट्रोलपम्प पे दो पेट्रोल डीजल के मशीन लगाई गई हैं यहाँ पर दो कर्मचारी खड़े हुए हैं।

यह बड़ा ही प्रभाव पूर्ण दृश्य दिखाई दे रहा है।

ऐस_ऐस_के काफी बू-बैट दिख रहे हैं।

यह दृश्य एक रेलवे स्टेशन का है।

यह दृश्य एक दुकान का है।

यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए बेंचें लगाई गई हैं।